करने के लिए नीचे में मैट बिछा हुआ है जो कि काले रंग का है।

यह एक बहुत बड़ी इमारत है जिसका नाम है अर्जुन कॉम्प्ले --

यह एक मंदिर है। जिसमे भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा रखी हुई है।

यह एक ओफिस है जिसमें

घूम रहे हैं नहा रहे हैं और स्लाइडर वाले झूले भी लगे हुए हैं।

यह एक प्रोग्राम का दृश्य है। जिसमें प्रोग्राम हो रहा है। मंच पर काफी सारे लोग हैं। जिसमें महिला और पुरूष साथ में उपस्थित हैं।

यह एक मॉल है जिसमें काफी सारे लाईट लगे हुए हैं। सीलीग में लाल ब्लू --

और सभी लोहे के फ्रेम की काली रंग की है और नीचे का जो फर्श हैं वो भूरा है।